और यहाँ पे यह क्लॉउडी वेदर दिखाई दे रहे है जहां पे सिर्फ बादल ही बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह अ -अ रास्ता बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे चारो ओर --

यहाँ पे एक घर बन रहा है जहाँ पे दो तीन वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे है एक वर्कर यहाँ पे सीढ़ी के ऊपर में बैठ कर कुछ काम कर रहे है।

और एक आदमी यहाँ पे फोन पे बात पे बात कर रहा है और यहाँ पे बहोत सारे आदमी खड़े है एक आदमी यहाँ पे माक्स पहने हुए है और --